नकाशी कर रहै है चित्र बना रहै है ज्योमेट्री बॉक्स रखे हुए है लड़के बैठे हुए है जिन्होने लाल रंग के कोट --

रेता होर लाल रंग के ईंटे रखे हुए है आस पास बिल्डिंग्स बनी--

ग्रिल्स दरवाजे खिड़कियाँ चढ़ने के लिए सीढियाँ बनी हुई है जिनमे--

बड़ी सी सड़क पर पक्की सड़क है जिसमे ऑटो रिकशा और एक बड़ा सा --

टम्पू वहाँ पर खड़ा है जिसमे नीले और सफ़ेद रंग के पाइपे रखी हुई है बाहर किनारो पर नीले और--

सड़क के किनारे चारों तरफ स्कूटी और मोटर साइकिल रखे हुए है और तीन मंजिला घर --

दुकान में बहुत सारे गोंदे पेन कॉपीया रखी हुई है बड़े-बड़े सफ़ेद रंग के बोर भी वहाँ हुआ पर रखे हुए है किताबो में --

छोटे- छोटे रंग के डब्बे भी रखे हुए है जो की लाला रंग के है आसमान नील और सफ़ेद रंग का। --

आस पास धन के लिए एक छोटी सी पेटि बनाई हुई है जो--

एक बड़ी सी नदी है जिसमे छोटी आधी आधी भूमि पर कच्ची मिट्टी लगी हुई है पत्तियों का रंग हरा घर है आस पास किनारो पर।